हेल्लो ये देख सकते हैं ये लोग डॉक्टर नए--

सब को कैंप में बिठाया हुआ है और ये लोग अपना-अपना मास्क वगेरा लगाया हुआ है और ये लोग कोरोना टाइम पे सबका साथ दिआ है सबको सुरक्षित रखा है देख सकते है और ये लोग सरकारी डॉक्टर है।

यहाँ झरना वगेरा लगा हुआ है उधर चाची खड़ा है भईया-भाभी खड़ा है बहोत सारे ये बच्चे कुछ खा रहे है।

हैल्लो देख सकते है ये बच्चा बहोत ही ये के साथ यहाँ बैठा हुआ है कुर्सी पे और अपना हेयर पूरा लोगो को बता रहा है और ये--

हेल्लो देख सकते हैं ये नदी कभी चबी लगने वाला नाँव हैं और कभी तेजी के साथ ले जाता हैं देख सकते हैं और ये काफ़ी सारा भाई लोग बैठा हुआ हैं।

हेल्लो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रक में माल जा रहा हैं देख सकते हैं।